पॉलिथीन्स भी दिखाई दे रहा है और फिर नीचे कुछ ग्रीन और पूरा रंग दिखाई दे रहा है कुछ रंभा कलर दिखाई आसमान पर पर्पल कलर --